एक लाल कलर की ब्रेंच बिछी हुई है।

पे लोहे के गेट लगे हुए हैं।

मंदिर के गेट के बाहर चार नंबर भी लिखा हुआ है।

जिसपे कई सारी मूर्तियां रखी हुई हैं जैसे साईं बाबा।

यह एक गार्डन - गार्डन है।

पार्क में खंभे भी लगे हुए हैं।

यह एक आईडिया का शोरूम है।

और बाहर तीन चार गमले भी लगे रखे हुए हैं इसमें पेड़ लगे हुए है।

जेंट्स आतिशबाजी बेचता हुआ महिलाओं को।

मूर्ति है जो कि किसी --

मकान के बाहर कई सारी स्कूटी मोटरसाइकिल दिखाई पड़ रही है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो की चश्मा लगाए हुए हैं।

सामने दो दुकान नज़र आ रहीं हैं।

और एक सड़क गई हुई है सड़क के किनारे लोहे की रेलिंग बनी हुई है।

भैंस के बड़े-बड़े सिंग हैं।

लगा हुआ है औ बाहर मोटरसाइकिल खड़ी हुई --

गाट् खेत बना हुआ है जिसमें --

दुकान है जिसपे लिखा हुआ है कैफ़े ।

एक रोड रोड है जो की चौड़ी है रोड पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

यह एक बोहोत बड़ी नदी है।